और यहां पे बाहर में बोहोत से फूल भी लगे हुए और यह एंट्री का गेट भी दिखाया जा रहा है जहां पे एक बाइक भी खड़ी हुई है।

बाहर में कुछ पेड़ भी दिख रहे और अंदर में कुछ बैठने की जगह भी दिख रही है।

और गेट लगा हुआ चारों तरफ बाउंड्री से घेरा गया है।

यहां पे बहोत सब लोग सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और पीले रंग के दुपट्टे लिए हैं।

और गत्ते गत्ते में बहोत सारे कपड़े गत्ते में करके रखे गए हैं।